पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे ऑक्सीजन हमें --

फल-फूल सभी लगे हुए हैं। यहाँ पे अनेक प्रकार के बाग --

यहाँ पे लड़का-लड़की का मिलन होगा।

एवं यहाँ पे हमें आठ पूल जनाई दे रही है।

यह यह टेबुल पर तीन डॉक्टर है जो कोरोना वैक्सीन का सुईया दे रहे है।

यहाँ पर एक औरत अपने फूल को पैक कर रही है।

यहाँ पे बोहोत अच्छा है महजिद बना हुआ है बोहोत बड़ा गेट है यह अ जिले में अ पड़ते हैं।